जिसमे हमको दिखाई दे रहा है कि उसका स्लैब डालने की तैयारी है।

जो कि इस समय खाली दिख रहा है। फर्नीचर के से --

पहले जबकि मास्क पहले से लगा रखा है ये वाटर मैन है।

इसमें खरीदारी कर रहे हैं लोग। जन सैलाव बढ़ा हुआ है कुछ लोग अपने वार्ता में मगन है।